यहाँ पे बोट पे किशनगंज बोल के लिखा हुआ है हिंदी में और उर्दू में --

और-और बड़े सा मैदान में ये ऑटो स्टैंड दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस पिक्चर में एक ब्रिज है ब्रिज के दोनो तरफ़ नदी है।

पेड़ दिख रहे हैं और ब्रिज के उधर पास एक मैदान दिख रहा है।

उनमें एक हेड है उनके और ये लोग चर्च के अंदर हैं।

एक चर्च दिख रहा है यहाँ पे एक कंपाउंड सफ़ेद कलर का है चर्च नाम लिखा हुआ है मारतोमा।

अनार है अनार के गुड्डे हैं --

जैसे की मैं देख पार रही हूँ इस चित्र में एक सारे कच्चे मच्छी बिकने का दुकान है।

कोट है यहाँ पे बड़ा-सा इनोक्स बोल के लिखा हुआ है और फूड आइटम्स का रखा हुआ एक शोकेस दिख रहा है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में मता गुजरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोल के बोर्ड है।

बड़े झाड़ दिख रहे हैं और नदी के आस-पास बहुत सारे लोग कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए है।

ब्रिज का पोल दिख रहा है और बस स्टॉप के उधर पास में बहुत सारे पेड़ हैं।

बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे फेडरल बैंक बोल के बोर्ड लगा हुआ है एटीएम का भी बोर्ड है।

ऊपर की रूम रूम में हरिया लाइटस से लगा है और --

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस चित्र में --

कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इस चित्र में स्टेट बैंक एटीएम का है।

इसके पीछे डूर दिख रहा है फिर उसके पीछे दो खिड़की आधे दिख रहे है इस तस्वीर में।

और इस लकड़ी का रंग ब्राउन कलर है।

जैसे कि मैं इस चित्र में देख पा रही हूँ एक केक तस्वीर है।

इस शोरूम में ये दिवाल का रंग रेड कलर है।

और एंट्रेन्स के इन पास में दो खिड़कियां है ओ फर्स्ट फ्लोर में भी एक बडा खिड़की --

पेट्रोल के पंप्स दिख रहे हैं और दो तरफ भी गाड़ियां रुकी हुई है पेट्रोल डालने के लिए।